खेतों में कुछ फल कुछ सब्जी कुछ बिजा हुआ है जिनको अ चूट्टी लिफाफों की पन्नी से कवर किया--

और बस में एक चढ़ रहा आदमी है काफी बस में सवारिया नज़र आ रही है।

अलग अलग कलर के अलग अलग मॉडल के और एक चलती हुई बड़ी बस नज़र आ रही है जो रेड रोडवे की वाइट कलर की बस है।

और बाहर एक शीशे में कुछ बच्चो के नैपकिन रखे हुए हैं पॉलिथिन में।

और अलग-अलग तरह के लोग कपड़े पहन के आए है। यह चर्च को लाल रंग का पेंट किया गया है।

और इस पे डिजिटल मार्केटिंग का काम होता है उनका फोन नंबर भी ऊपर लिखा है।

और का गेट ऑन है बाहर काफी स्टील के जंगले लगे हैं।

काफी लोगों के भीड़ है जो लाइन में खड़े हैं और एक ऑटो रिक्शा दो बाइक भी खड़ी है।

और पार्क के बीच एक ग्रीन कलर का डस्टबिन बना हुआ जहां कूड़ा डाला जाता है।

ये तस्वीर एक लड़की की है जिसने में गल में साफ स्कार्फ डाला हुआ है।

बीच में ये कटोवा खोदा गया हैं जिसके आसपास काफी ईंटे रोडे़ बिखरे हुए और पानी का पाइप ही बिखरा हुवा हैं।